बोहोत ही प्यारा है साफ सफाई है चारों तरफ टेबल हैं।

बहुत ही सुंदर दृश्य है बहुत ही प्यारी सजावट।

एक छोटी सी छत है और पीछे कुर्सियां है।

और थोड़ा पुराना लग रहा है मुगलों के समय का--

यह एक होटल या रेस्टोरेंट लग रहा है।

यह एक पारक है बच्चे यहां अक्सर खेलने आते हैं यहां बहोत सारे अलग अलग तरह के झूले हैं।

ते चीज के साथ और सभी ने मास्क पहन रखा है।

यहां रेत लग रहा है बहोत ही सुंदर नजारा है।

टेंपू दिखाई दे रहा है जिसमें बड़ा सा पेट्रोल लिया ले जाया जाता हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए--

सूरज एक डुबकी लगा रहा है सूरज अस्त हो रहा है चारों तरफ हरियाली है।